एक मशीन जीसमें लाल पेंट लगे हैं और सामने सिट रखी है।

बहुत सारे आदमी हैं इंडियन ऑयल लिखा हुआ है सामने खुला आसमान है पेड़ दिखाई दे रहे--

जो पानी ऊपर फेंकता है इसके पीछे लाइट जल रही है।

ये हे आसरे फाउंडेशन है जिसके अंदर बच्चे बैठे हैं।

सामने गुरु नानक देव जी की तस्वीर लग रही है।

लाइटें लग रही हैं पंखे लग रहे हैं मेज रखी है बैठने के लिए कुर्सी रखी है।

यह एक शोरूम शोरूम के अंदर डबल बेड है।

कुर्सियां हैं चाली हैं और लाइटें लग रही हैं।

बाहर बराबर में इधर भी और उधर भी लोहे की छोटे-छोटे गेट बने हुए हैं।

यह एक फार्चून की दुकान है दुकान के अन्दर आदमी खड़े है।

यह एक बहुत सुंदर बांध है बांध के अंदर पानी है।

कपड़े रखें हुए हैं कुछ डब्बे रखे हुए--

पीछे इसके जंगला है उसके नीचे एक गेट है। गेट के अंदर पर्दा लगा हुआ है।

यहां आसमान है और यहां एक कैमरा भी लगा हुआ है।

यह बैंकट हॉल का गेट है। गेट के ऊपर निलली सुफेद चुनरी लगी --

सामने खुला आसमान है बिल्डिंग बनी है मंडप भी लगा हुआ है साइड में और पार्क --

यह जिम सेंटर है जिम सेंटर के अंदर दौड़ करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन रखी हुई--

साइकिल वाली मशीन रखी हुई है सामने एक बोर्ड लग रहा है जिस पर एक व्यक्ति का चित्र बना है।

पलक लग रहे हैं और सामने द्वारा है।

और की रेलिंग बनी है।

मुझे रेलिंगे दिख रही हैं नीचे कमरे बने हुए हैं।

बच्चे भी ले रही हैं एक व्यक्ति भी खड़ा है।

खुला आसमान है और बराबर से पानी में उतरने के लिए ढाल बना हुआ है।

यह एक बिजली की दुकान सामने एक बोर्ड है।

और नीचे पूरा समतल एरिया है जो प्लेन है।

गेट पर पर्दा लगा रहा है और गेट खुल रहा है।

और खड़े हुए हैं सामने बाउंड्री है।

उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है बाहर गमले रखे हुए हैं।

सामने दो बड़ी लाइटें हैं खुला आसमान--

सामने फूल टंगे हुए है एक तस्वीर भी रखीं हुई है।

ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और बराबर में लिखा हुआ है।

दो बाइक खड़ी है दोनों बाइक के ऊपर हेलमेट रखे हुए है।